ये बच्चे सब प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं।

दिल्ली से बोहोत अच्छा लग रहा है।

कुर्सी सब लगी हुई है बोहोत सारी थैंक --

गायत्री जी की फोटो है। --

एक मंदिर है। लग रहे है।

कोट रंग-बिरंग की मिलती है ये दूकान में रेहने शानदार लग रहे हैं बहोत अच्छे लग रहे हैं दुकान।

यहाँ एक मंदिर है। मंदिर बोहोत अच्छा लग यह मंदिर में एक फोटो है। फोटो में भगवान जी बोहोत अच्छे लग रहे हैं।

प्रिंट हो रहा है मशीन पे --

यहाँ बॉल लगा हुआ है थैंक यू ।

यहां पे बेल्डिंग - उल्ल्डिंग किया हुआ है झोपड़ी है झोपड़ी बहुत अच्छे लग रहे है ।

खुद ही खाने दे --

दो डस्टबिन बोहोत अच्छा शानदार थैंक यू --

जहा भीड़ लगी हुई है सब आदमी सब मंदिर बोहोत शानदार लग रहें है देखने से बोहोत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ मंदिर है। सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए।

तीन अदमी बाहार हि खड़े हैं।

रंग-बिरंगे सामान भी मिलते हैं खाने-पीने के --

बना रहे हैं घर देखने से बोहोत अच्छे लगे ये है --

ये एक घर है। ये एक ट्रैन है। ट्रैन में --

यहाँ पर सब फ्री है। रहे हैं।

बोहोत अच्छी तरह सजाए हुए हैं। ऐसे बोहोत अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक लोग दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे है।

बोहोत रंग बिरंगी फोटो रखी हुई है। टेबल कुर्सी --

पेंटिंग की गई है। दो गाड़ी खड़ी है।

असली करने के लिए अच्छे लग रहे है इसलिए अच्छे खासे दाम मिलती है। बोहोत अच्छा लग रहा है।

ये मछली खाने मे बहुत अच्छे लग रहे है लगते हैं थैंक यू चाचा।